रेलवे ट्रैक के उस पार काफी सारे लोग नजर आ रहे है| काफी सारी दुकाने नजर आ रही है घर भी नजर आ रहे है।

ये एक बड़ा सा खेत है जिसमे पलाव हो चुका है और एक इलेक्ट्रिक खंभा नजर आ रहा है काफ़ी सारे छोटे-छोटे पौधे नजर आ रहे है कुछ लोग इस पेड़ के निचे बैठे हुए है।

एक बड़ा सा जिम है| यहाँ पे काफी सारी जिम एक्सेसरीज रखी हुई है| एक एनर्जी पाउडर का डिब्बा रखा हूआ है।

क्या है यह? काफी सारी हरी हरी घास नज़र आ रही है| काफी सारी खिड़किया नज़र आ रही है| और उसके सामने एक और बिल्डिंग नज़र आ रही है।

एक दीवार नज़र आ रही है| उसके सामने एक वेयरहाउस नज़र आ रहा है और एक घर भी नज़र आ रहा है।

कुछ गाड़िया खड़ी हुई है| एक की झंडा नजर आ रहा है| दो पोस्टर नजर आ रहे है| एक व्यक्ति खड़े हुए है| और एक बड़ी सी बिल्डिंग नजर आ रही है और काफी सारी खिड़किया नजर आ रही है।

बड़ा सा रोड नजर आ रहा है| कई सारे ट्रक नजर आ रहे है| खम्भे नजर आ रहे है| बिल्डिंगे नजर आ रही है।

बड़ा सा स्‍टे‍ड़‍ियम नजर आ रहा है| बहुत सारे व्यक्ति नजर आ रहे है| एक टीन शेड नजर आ रहा है।